और वो कुछ मछलियों को काट रहा है एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ मछलियों को छू कर देख रहे है।

रूम-- एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल मै दो तीन डस्टबिन रखे हुए है।